मोटरसाइकिले खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यह बड़ा शोरूम है।

यह दृश्य एक सकूल का है और यह एक प्राइमरी सकूल है इसका नाम है शेमरॉक --

यह एक महाराणा प्रताप की मूर्ति है जो कि अपने घोड़े के ऊपर --

ढेर सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और दूकान के अन्दर एक --

यहाँ रेलवे स्टेशन के आईजी पॉइंट पर--

तिरंगा वाले घडी भी दिखाई दे रहे है और अ --

यह दृश्य एक मंदिर का है और यह मंदिर ।

यह दृश्य एक खुल्ले मैदान का है जहाँ--

यहाँ बड़े - बड़े पेड़ - पौधे उगे हुए नजर आ रहे है और आकाश में बादल हो रहे है।

सजा रखा है और समारोह स्थल के सामने अनेक प्रकार के फव्वारे लगा रखे है।

खेत के अन्दर ढेर सारे चाय लगा रखी है और यहाँ सूरज निकल रहा है।